यह एक अस्पताल है।

यहां पे आजू-बाजू में बहुत सारी सुंदर- सुंदर लाइटें लगी हुई है।

और बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है एलेक्ट्रिक -----

और ऑटो जाता हुआ दिख रहा है और एक स्कूटी पे दो औरतें दिख रही हैं एक पुरुष बाइक जा रहा है।

क्योंकि इसका नाम तो नहीं पता चल रहा है इसमें भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं माता रानी है ये।

ऊपर एक मटका लटका हुआ है जिसमें से भगवान को जल----

और एक आदमी अपने बच्चे को ले जाता हुआ दिख रहा है।

योगोदा सत्संग ध्यान केंद्र है।

पांच बज के सात पाँच बजे से सात बजे तक यहां पर लोगों की -----

ये एक कपड़े की शॉप लग रही है।

साड़ियां पहन के खड़ी हुई है उसको प्लास्टिक की----

यह एक गार्डन देखने में लग रहा है जो कि बहुत सुनसान सा है।

का होगा जो देखने में अच्छे लगते हैं।

कार है जिसका नाम है डिस्कवरी ---

घर की डेकोरेशन के लिए सामान दिख रहे हैं।

कुछ पैस्ट्रीयां दिख रही हैं।

जो कि नीचे दाना चुग रहे हैं।

प्रकार की मिठाइयां देखने को मिल रही है मिल रही हैं जो कि देखने में बहुत टेस्टी लग रही है।

एक औरत मास्क लगाई हुई दिख रही है।

और लोग तो नहीं दिख रहे हैं पर हमें पता चल रहा है कि ये जिमखाना है।

मिठाइयों का पोस्टर लगा हुआ है।

मिठाइयां हमें बहोत पसंद है। मिठाई अच्छी होती है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है थोड़ी बहोत --

शॉपिंग करने आते हैं।

और एक सीढ़ी जा रही है मोटी पाइपें लगी हुई हैं बालो मिट्टी लगी हुई है।

स्वच्छता को प्रदर्शित करता हुआ यह लोगो दिखाया गया है।